बोर्ड पर अरोमा कॉफी शॉप लिखा हुआ हे ।

इमेज में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है।

मैदान में कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। .

आ पेड़ लगे हुए नजर आ रहें हैं।

पीछे की तरफ दरवाजे पर फूल माला से डेकरैशन किया हुआ है।

इमेज में एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है।

इमेज में एक बिल्डिंग नजर आ रही है। बिल्डिंग के सामने सड़क बनी हुई है।

और बोहोत सारे बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जरकिन पहनी है नीले कलर की जींस पहनी हुई है।

कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं। बिजली के खंबे लगे हुए हैं।

घर के आस-पास घाँस उगी हुई है।

आसमान में बादल छाए हुए हैं।

सामने की तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं।

आ सुपड़ों पर कुछ सामान रखा हुआ है।

मैदान पर कुछ लड़के खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ भाई खातों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो बनी हुई है।

बोर्ड पर मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है।

पोस्टर पर स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो लगी हुई है।

एक स्विच बोर्ड लगा दिख रहा है।

बैनर पे कुछ लिखा हुआ है और कुछ लोगों की फोटो लगी --

इमेज में एक दुकान दिखाई दे रही है।

खाने की चीजों के पैकेट टंगे हुए हैं।

आ सभी बोक्सेस अलग-अलग कंपनियों के हैं।

शौचालय के दीवार पर पेंटिंग की हुई है और कुछ लिखा हुआ है।

बिजली का खंभा लगा हुआ है बिजली की तारें नजर आ रही हैं।

एक लेडीस बैठी हुई है। लेडीस ने हरे रंग की साड़ी पहनी है।

दुकान के छत में बोहोत सारी लाइट जल रहे --